यह एक भट्ठी का फोटो दिखाई दे रहा है।

यहां पर कतार में बहुत से व्यक्ति होली खेल कर फोटो खिंचवाते हुए--

उनके पीछे एक छोटा सा घर दिख रहा है।

यह एक बस स्टॉप का फोटो दिखाई दे रहा है यहां पर एक बस --

पड़ी हुई दिख रही है और एक व्यक्ति कल पर पानी पीते हुए नजर आ रहा है।